हिंदी में रेड कलर में लिखा हुआ है। लंबे-लंबे इलेक्ट्रिक के तार हैं। इलेक्ट्रिक की खूंटी दिख रही है। एक बड़ा-सा गज है झक बड्ढ़ा-सा है।

एक केक बना हुआ है जो की ब्लाक कलर का चॉकलेट केक है। जिसके ऊपर किटकैट चॉकलेट है और --

और बदन में सुइटर पहना है जो रेड कलर का है एक टाई भी बांधा हुआ है। उसी के साइड में एक छोटा बच्चा उसको लगकर के खड़ा हुआ है जिसका सिरीफ़ चेहरा दिख रहा है।

बहोत सारे गच्छ है जिनमे कुछ पत्ते ग्रीन -ग्रीन कलर के है कुछ मिट्टी काली दिख रही है एक लड़का झुका हुवा है।

एक सलून है जिसमें एक आदमी चेयर में बैठा हुवा है कपड़ा उसके उपर ब्लू कलर का लपटा हुवा है। दूसरा आदमी खड़ा हुवा है जिसकी दाढ़ी के तरफ हाथ बढ़ाया हुवा है।

दो ने चश्मा लगाया हुआ है सामने में कुछ बुक रखे हुए हैं कुछ बॉटल्स हैं और इन्होने कुछ ने वाइट कलर के जैकेट --

उसके नीचे में कुछ ग्रीन रेड व्हाइट कलर में पोस्टर है।

उसकी पीछे में बोर्ड लगा हुआ हैं जो ब्लू कलर का है जिसमे व्हाइट कलर का एक कागज़ चपका हैं। उसके साइड में व्हाइट कलर लगा है। उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड है।

पीछे दीवार में रेड कलर लगा है। जिसके नीचे में कलर ब्लू कलर का बॉर्डर है। ऊपर जाली लगा हुआ है।

जोकि व्हाइट कलर का है। वहां पे दो लोग दिख रहे हैं जो बोहोत ही छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं। सामने में बोहोत बड़ा सा रोड है ऊपर आसमान व्हाइट --

पैर पे उसने अलता लगाया हुआ है लाल रंग का हाथों पे भी सर पे गजरा हैं और सर के बाल काल हैं। माथे पे --